यहाँ पर एक टुटा हुआ मकान दिखाई दे रहा है। यहाँ आस पास --

यहाँ पर कई तरह की रंगबिरंगी लाइट दिखाई दे रही हैं। यहाँ --

इनमें मोमबत्तिया लगी हुई हैं।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

कुछ लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई है।